और बगल में भी एक बिल्डिंग है बड़ा सा।

यहाँ पे लकड़ी का घर बना हुआ है दो और प्लास्टिक से उसको कवर किया गया है।

पीछे बड़ी बड़ी पेड़े सब है।

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

बस आगे में एक मोटरसाइकिल है जिनके पास हेलमेट नहीं है।

कलर सीमेंट कलर से है।

एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है लकड़ी लेकर।

ऊपर में सेकंड दूसरे तल्ले में एक आदमी जाते हुए नजर आ रहा--

पर में सैमसंग लिखा है।

अगल बगल कुछ घर दिख रहे हैं।

एक महिला साड़ी में एक बच्ची को लेकर खड़ी है और दो पुरुष से बात कर रही है।

इनमें से एक पुरुष का चेहरा दिख रहा है।

तथा टूटे फोन बीच निकाल के बनाए किसी के कवर है।

और एक सामने बिल्डिंग है एक पतंजलि का बोर्ड लगा है नीचे में--

बड़ी बड़ी पेड़े भी है और कुछ यहाँ पे आगे में चार पुरुष बैठे हुए नजर आ--

पीछे एक पुरुष क्रिकेट बैट के ऊपर बैठते हुए नजर आ रहा है।

एक वाटर पार्क की तस्वीर है जिसमें कुछ बच्चे पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं दिन की तस्वीर है पीछे पेड़ है बड़े बड़े।

फूल सफेद रंग का है।

और यहां पे गाड़ियां भी मोटरसाइकिल और साइकिल खड़ी--

एक खंभा भी खड़ा है।

उसके पीछे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं दूर दूर में।

बैलून भी लगा है नीला और लाल।